ऑरेंज और पर्पल है यहाँ पे कु --

ज़मीन भी दिखाई दे रही है। हुआ है।

और पिंक के नीचे --

और इसमें एक --

मेन गेट भी दिखाई दे रहा --

दिखाई दे रही है जिसका कलर व्हाइट है और यहाँ पे कुछ इंजेक्शन वगैरा भी दिखाई दे रहे हैं।

कैमरा भी लगा हुआ है और एक बल्ब भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।